यह एक रेस्टोरेंट है और यहां पर बहोत सारे गुब्बारे लगे हुए हैं।

और यहां पर बहुत सारी चेयर भी है।

यह एक भैंस दिखाई दे रही है जो चारा चर रही है।

और एक विंडो भी है और एक दरवाजा भी है।

और यहां पर बहुत सारे बल्ब भी लगे हुए हैं।

यह एक गली है और यहां पर बहुत सारे घर भी हैं।

इस इस स्कूल की दीवार पर चार पांच बच्चों की चित्र भी बने हुए हैं।

यह एक मंदिर है और इस मंदिर पर बहोत सारी लाइटे भी लगी हुई है।

और इसके ऊपर सरस्वती विद्या इंटर कॉलेज सहारनपुर भी लिखा हुआ है।

और इसके बाहर बहुत सारे गमले रखे हुए हैं।

और यहां पर एक कुत्ता भी है।

और यहां पर एक घर घर भी है।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

और यहां पर एक केतली भी रखी हुई है।

और एक के हाथ पर पट्टी बंधी हुई है।

यह एक जिम है और यहां वाकिंग मशीन भी रखी हुई है।

और यहां पर बाईकें भी खड़ी हुई हैं।

और यहां पर बहुत सारे आदमी भी हैं और कार बाइक और एक्टिवा भी हैं।

यह एक मंदिर है और यहां पर बहोत सारी मूर्तियां भी रखी हुई हैं।

और यहां पर एक बैठने की सीट भी लगी हुई है।

और यहां के घरों पर कलर भी है।

और इलेक्ट्रॉनिक तार भी लटक रहा है।

और एक कार ऊपर है और यहां पर बहुत सारी मशीने भी हैं।

और बहुत सारी लाइटें भी लगी हुई हैं।

और यहां पर बाइक भी खड़ी हुई हैं।

और एक आदमी भी बैठा हुआ है।

और इन सब बच्चों ने सेम सेम ड्रेस पहनी है।

यह एक जिम है और यहां पर बहोत सारी मशीनें रखी हुई है।

और यहां पर बहोत सारे आदमी भी हैं।

और यहां पर सीढ़ियां भी लगी हुई है।

और नहर में बहुत तेजी से पानी चल रहा है।